इमारत के पीछे बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे है इमारत के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी लिखे हुए दिख रहे है।

इस चित्र के अंदर एक रोड नजर आ रहा है। जिसके ऊपर एक छोटी बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र के अंदर एक विद्यालय नजर आ रहा है। इसके बाहर एक बड़ा घास का मैदान दिखाई दे रहा है। विद्यालय के अंदर बड़े बड़े खिड़की और दरवाजे भी लगे हुए है जो की जाली से बने हुए दिख रहे है।

वुड के अंदर बहुत सारी लाइट भी लगे हुई दिख रही है दुकान के अंदर एक कांच का दरवाजा लगा हुआ दिख रहा है सामने कुछ कुर्सिया वा मेज नजर आ रही है।

सामने बड़ी बड़ी घास भी लगी हुई हैं पीछे कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे नजर आ रहैं हैं।

इस चित्र के अंदर एक झरना दिखाई दे रहा है जो कि बड़ी-बड़ी चट्टानों पर से बहता हुआ नीचे मे नदी आकर मिल रहा है।

इस चित्र के अंदर एक पार्क नजर आ रहा है जहा पर इ स्टेचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति दिखाई दे रही है सामने लव प्रतिष्ठान भी दिखाई दिख रहा है।